इस बिल्डिंग में बहुत सारे सरिया पड़ी हुई हैं।

पीछे के साइड भी बहुत सारे घर बने हुए हैं।

ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई हैं।

दृश्य में किसी स्टेशन का चित्र दिखाया गया है।

उसके बगल में खाने पीने की दुकान भी--

हमें इस फोटो में एक गार्डेन नजर आ रहा है।

जहां पे बहुत छोटी छोटी घास लगी हुई है।

तरबूज श्श खरबूजा अमरुद केले इत्या रखे हुए हैं।

हमें इस फोटो में एक झूले का दृश्य दिखाया गया है।

हमें इस फोटो में रात का दृश्य दिखाया गया है।

टेबल चेयर्स भी पड़ी हुई हैं।

हमें इस फोटो में एक बिल्डिंग नजर आ रही है।

उपर एटेल का बैनर लगा हुआ है।

उसके बाद गेट में ताला लगा हुआ नजर आ रहा है।

पीछे के साइड झाड़ू भी रखी हुई है।

पीछे दीवाल गोल गोल छेदों से बनी हुई है।

यहां पे ऊपर पप्पू स्टोर लिखा हुआ है।

में इस फोटो में नर्सरी का दृश्य दिखाया गया है।

हमें इस फोटो में इकाना स्टेडियम का दृश्य दिखाया गया है।

एक बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

बहुत सारी लकड़ियां बंधी हुई लगी हैं।

पीछे के साइड क्रिश्चियन वाला सिंबल भी बना हुआ है।

हमें इस फोटो में मंदिर का दृश्य दिखाया गया है।

जहां पे बहुत सारी लाइट लगी हुई हैं।

जहां पर पीछे के साइड एक घर बना हुआ है।

पीछे दीवाल पर हरे हरे डिजाइन बनी हुई है।

टेबल के अंदर एक बोर्ड लगा हुआ है।

बहुत सारे हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं।

जहां पे बहोत सारी टेबल और चेयर्स पड़ी हुई हैं।

बाहर भी कुछ लोग बै खड़े हुए हैं।